और इसके अंदर में बहोत सारे थाली बर्तन भी दिखाई दे पा रही हैं।

साइड में भी एक घर दिखाई दे पा रही है।

और ये सब में बहोत सारी सामान सब रखा हुआ दिखाई दे पा रहा है।

फिर से ये इसमें बहुत सारे बच्चे और बहोत सारे आदमी लोग देखने को मिल रही है।

यह हमें दो आंटी भी बैठा हुआ दिखाई दे रही है।

के उपर में भी एक लाइट बल्ब दिखाई दे रही है।

इस एरिया में बहोत सारी सफेद कलर की गाड़ी पार्क करके भी दिखाई दे पा रहा है।

ऊपर में भी लाइट बल्ब दिखाई दे रही है।

मुझे इस पिक्चर में बहोत सारी बस पक करके दिखाई दे रहा है।

मुझे इस पिक्चर में एक चर्च देखने मिल रही है।

मुझे इस पिक्चर में दो आदमी गाना गाते हुए दिखाई दे रही है।

दूसरे साइड में भी बहोत सारी घर देखने को मिल रही है।

फिर से यहां में एक छाता भी देखने मिल रही है।

इस या में गाड़ी भी पार्क करके एक दिखाई दे पा रही है।

मुझे इस पिक्चर में बहुत सारे आदमी लोग गेदर होके दिखाई दे पा रहा है।

और यहां में रेड कलर की चेयर भी देखने को मिल रही है।

मुझे इस तस्वीर में एक जिओ प्वाइंट देखने मिल रही है।

यहां में एक लाइट भी दिखाई दे रही है।